यह एक बड़ा प्लॉट है जिसमें बड़े या बड़े से चद्दर टीन प्लास्टिक लगे हुए हैं।

तलाब में सूर की किरण काफी अच्छी पड़ रही है।

यह एक पुस्तकों की बड़ी दुकान है इसमें कुछ अलमारियां हैं।

हाथी के ऊपर एक लोग खड़ा हुआ है और पीछे बहोत से लोग --

इस टोल गेट में बड़े वाहनों की पार्किंग की जाती है।

यहां एक ठेला दिख रहा है ठेले में कांच लगा--

सामने शंकर भगवान की बड़ी सी प्रतिमा दिख रही है।

बाजू में कुछ झंडे लगे हुए--

इसमें घासों को भरपूर मात्रा में भरा गया है।

और समान व्यवस्थित ढंग से रखा गया है।

नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग बैठे हैं।

इस दुकान में फूलों को टेबलों में रखा गया--

सामने बड़े बड़े दो गेट दिख रहे हैं गेटों को सजाया गया है।

बड़ी सी कपड़े की दुकान दिख रही है जिसमें पुतलों को कपड़े पहना के टांगा गया है।

जिसमें अनेक प्रकार के फूल दिख रहे हैं।

नाव में कोई नहीं बैठा हुआ है समुद्र के किनारे बिल्डिंगे बनी--

व्हाइट है और कुछ बड़ी बड़ी इमारतें है।